इस तस्वीर में खाने की दुकान दिख रही है।

अह मंजिल के पीछे टिला है टीले के ऊपर पौधे पेड़ भी नजर आ रहे हैं जो हरे भरे हैं।

गौशाला के अंदर काफी शारे पशु खड़े हैं।

इस इमेज में सामने एक नाई की दुकान दिख रही है।

इस ईमेज के अंदर एक मंच लगा हुआ है मंच के ऊपर साउंड सिस्टम वगैरह लगा हुआ है ये मंच भजन प्रोग्राम का नजर आ रहा है।